यहां पर एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

यें यहां पर एक मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है अन्दर कुछ लोग जाते नजर आ रहे है।

देखिएगा सामने यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर देखिएगा पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहाँ पर एक मस्जिद दिखाई दे रही है और गेट के पास में तीन चार लड़ --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

यहां पर एक सामने स्टेज दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लड़के लड़कीयाँ खड़े नजर आ रहे हैं।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

इमेज में सामने यहां पर एक चर्च दिखाई दे रहा है नीचे यहां पर कई सारे लोगों की भीड़ नजर आ रही है।

मुझको जहां पर देखिएगा एक मिठाई की दुकान दिखाई दे रही है यहां पर मिठाईयां रखी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ा सा सुंदर सा फूल दिखाई दे रहा है पास में कुछ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

हमने यहां पर हवा महल दिखाई दे रहा है और यहां पर बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी नजर आ रही हैं।

हमें यहां पर एक इमारत दिखाई दे रही है और देखिएगा सामने यहां पर एक छोटा सा पार्क भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जहां पर एक स्कूटर खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा है ऊपर देखियेगा सीट बनी डोलिया धर्मशाला लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक बैंक दिखाई दे रहा हैं और यहां पर एक बड़ासा नीम का पेड़ भी नजर आ रहा हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर टेबल पर कुछ मछली दिखाई दे रही है और कुछ मछली के पीस भी यहां पर नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक जिम दिखाई दे रही है जहां पर देखिएगा एक्सरसाइज करने की मशीने रखी नजर आ रही है।